और ब्लैक कलर की वै--

उसके अंदर बहोत सारी --

और एक गेट दिख रहा है उस गेट का कलर रेड है।

एक आदमी है उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है।

सिल्वर रेड और ब्लू है।